हर कंपार्टमेंट के सामने एक कुर्सी भी पड़ी है।

नीचे की तरफ सफेद रंग की टाइलें लगी है।

बहोत सारे लोग छठ पूजा करने के लिए इकठा हुए हैं।

महिलाओं के टोकरी में फल व गन्ने हैं।

सामने जांच के लिए मशीन लगी हुई है।

काले डिब्बे में चोको चिप कुकीज भी दिख रही है।

हट्स के साइड में रेलिंग लगी हुई है।

बेडरूम पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है।

दीवाल पर एक घड़ी भी टंगी हुई है।

कसरत करने वाली बहुत सी मशीनें भी दिख रही हैं।

रनिंग ट्रैक के पीछे एक मैदान है।

काउंटर पर कैलकुलेटर व कैंची रखे हुए हैं।

पीछे की तरफ अलमारीयो में सामान रखा हुआ है।

गुरुद्वारे की जमीन पर चटाई बिछी हुई है।

सड़क पर कुछ दुकानें भी लगी हुई है।

साउंड सिस्टम पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

इस फोटो में एक बेकरी की दुकान दिखाई गई है।

दुकान का नाम वॉलनट वर्ल्ड बेकरी --

इमारत की जमीन पर लाल कारपेट बिछा हुआ है।

ये दूसरी तरफ एक इमारत बनी हुई है।

प्लेट के ऊपर लाल व नीले रंग की धारियां बनी हैं।

रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं।

कुछ लोग स्टेज के ऊपर खड़े व बैठे भी है।

कुछ बोतलों में पानी रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

सिलेंडर के पास एक व्यक्ति मास्क लगाए खड़ा है।

रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

नीचे की तरफ चटाई बिछी हुईं हैं।

मजदूर टाइल के बड़े टुकड़े को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं।

सामने नीले रंग के खंबे भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक लाइब्रेरी का दृश्य दिखाया गया है।

लाइब्रेरी में पीछे की तरफ अलमारियां हैं।

कुछ लोग कुर्सी पर बैठकर किताबें भी पढ़ाते हुए दिख रहे हैं।

रोड के बगल में एक ओवर ब्रिज भी गुजर रहा है।

इस फोटो में एक सड़क का दृश्य दिखाया गया है।

सड़क के दूसरी तरफ पेट्रोल पंप भी दिखाई पड़ रहा है।

डांस क्लास में बहुत सारे बच्चे डांस कर रहे है।

इस फोटो में आइसक्रीम की दुकान दिखाई गई है।